यह चित्र वही बिल्डिंग का है यहाँ पर सामने अंदर के अंदर बहुत सारे कार खड़े हुए हैं और यहाँ ब्लैक कलर के रेलिंग हैं और यहाँ सब खिड़कियाँ पर जाली लगी हुई है।

और यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे लगता है यह अपार्टमेंट है यह अपार्टमेंट के ऊपर कपड़े भी सुखाए हुए हैं।

यहाँ दुकान मे कुछ चीजें भी रखे हुए हैं वहाँ पर अनेक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।

यहां पर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है मगर भी वहां पर बहोत सारे इंसान मौजूद है।

और अपने अनेक प्रकार के स्पोर्ट्स के आइटम भी मौजूद है।